कस्टमर है जो फेस को देख रहे है।

यहाँ एक ऑटो कंपनी है जहाँ पर दो ऑटो खड़े हुए हैं एक लाल कलर का ऑटो है।

और नदी के बीचों-बीच एक शावर चल रहा है।

यहाँ पर एक बैंक है जिसका नाम एस.बी.आई. है और वहाँ पास ही में ए.टी.एम. है।

और नीचे कुछ येलो कलर की ग्रास दिखाई दे रही है।

कसरत करने के सामान रखे हुए है वहां एक मिरर लगा हुआ है।

बाइक्स रखी हुई है उन पर हेल्मेट है।

के ऊपर कुछ लाइट दिखाई दे रही है।

लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर किसी एक बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है।

वहां पर बहुत सारे सामान क्रीम ये सब लगे हुए है वहां पर लाइट लगी हुई है।